यहाँ पर एक इंसान जो कार कि डिजाईन को ठीक कर रहा है यह कोई खराब कार है क्यूंकि इसके आगे का लाइट भी टूटा हुआ है यहा पैर मोती मोती तार है जो बिजली की तार होगी।

यहाँ पर स्टील के छोटे छोटे कटोरे जेसा भी बहुत सारा बर्तन है यहाँ पर एक इंसान जिसने बैग लगाया हुआ है। उसने चेक शर्ट पहना हुआ है।

यहाँ सामने बहुत सा बड़ा सा एक मैदान है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है।

यह एक पार्क है जहां पर बोहत सारे बच्चे है जो झूले झूल रहे है इसमे काफी डिजाइनर झूले भी लगे हुए है नि --